सामने शीशा लगा हुआ है बहोत सारा सामान भी--

सामने हरे भरे पेड़ पौधे और घास का मैदान दिखाई दे रहा है।

बादल भी आसमान में छाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक मुड़ी हिलाके गोल है।

पास काफी मिट्टी का काम किया हुआ है बहुत सुंदर नक्काशी करी गई है।

यह माताटीला बांध का दृश्य दिखाई दे रहा है।

आसपास कुछ सामान बिकता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक और जनरल मर्चेंट की दुकान दिखाई दे रही है।

सजावट की हुई है फूलों और लाइटों से।

सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियां पुल वगैरा बने हुए हैं।

यह एक टॉय ट्रेन का दृश्य दिखाई दे रहा है।

भा इस ढाबे का नाम भारत ढाबा या रेस्टोरेंट है।

आदमी अपने हाथ में कड़ा और कलावा पहने हुए हैं।